अब शो नजर आ रहे हैगाड़ी नजर आ रही हैएक उसमे पेट्रोल पम्प का साइन बना है।

बनाना कुछ चार्स लगे हैभगवान के पोस्टर्स लगे है।

और हमे यहाँ पे शो हो रही है शो हो रही हैमैदान शो हो रहा हैयहाँ पे बिल्डिंगया मे विंडो और गैलरी यहाँ पे दिखाई दे रहे है।

और दो ट्रे मे हमे दो कप नजर आ रहे है एक कॉफी है वो हमे शो हो रहे हैं।

वो नजर आ रहा है कुछ लोग नजर आ रहे है ट्री नजर आ रहे है।